कांच का एक गेट दिखाई दे रही है एक रेक दिखाई दे रही है उस पे कुछ बॉक्स दिखाई दे रहे है।

यहा पर एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है और एक व्हाइट कलर की बोट दिखाई दे रहे है कार दिखाई दे रहे है बाइक दिखाई दे रही है बास दिखाई दे रहे है सीमेंट वाले पत्थर दिखाई दे रहे है।

ट्रैक्टर दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का मिट्टी दिखाई दे रही है छोटे कंकड़ दिखाई दे रहे है बड़े पेड दिखाई दे रहे है पहाड़ दिखाई दे रहे है ब्लैक कलर के टायर दिखाई दे रहे है कुछ लकड़िया दिखाई दे रही है।

सफेद बादल दिखाई दे रहे हे।

यहाँ स्टील की ट्रे दिखाई दे रही जलेबी दिखाई दे रही ब्लैक कलर की चैर दिखाई दे रही कड़ाई दिखाई दे रही।

यहा पर रोड दिखाई दे रहे कुछ लोग दिखाई दे रहे कार दिखाई दे रही ऑटो दिखाई दे रही रेड कलर की कार दिखाई दे रही व्हाइट कलर का बोर्ड दिखाई दे रहा है।